कुछ व्यक्तियों खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं बाइक और गाड़ियां खड़ी दिखाई दे रही है ये एक उसमें तार व ट्रांसमीटर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक धार्मिक स्थल दिखाई दे रहा है जिसमें बाहर की तरफ में फूल फूल और फूलों की मालाएं लगी हुई हैं घंटी लगी हुई है।

और एक कुत्ता भी जो कि भूरे कलर भूरे रंग का है वो जा रहा है अपने रास्ते से और ये बहुत लंबी लंबी लाइन धक्के घे रही है।

इसमें फ्रिज कूलर रखे गए हैं ये कूलर फ्रिज का शोरूम लग रहा है जिसमें ऊपर की तरफ पंखे लगे हुए लाइटे भी लगी हुई हैं।

वो होर्डिंग बनाई गई है जिसमें कि इसमें ये दर्शाया गया है कि एक ल एक लेडिस पानी लेके जा रही है अपने सर पर।

इस तस्वीर मे मैं देख पा रहा हूं की एक टीन का बोर्ड एक टीन का बोर्ड है जो ऊपर की तरफ लगा हुआ है।

एक बंदा ए_टी_एम कार्ड मशीन से बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा इसमें ये कांच का गेट लगा हुआ है एक राइत रात का समय लग रहा है जिसमें लाइटें जल रही हैं।

बाहर की तरफ में मुझे एक कड़ाही दिखाई दे रही है और तेल का पिंपा दिखाई दे रहा है पीछे की तरफ में दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं मिष्ठान भंडार भी हो सकता है।

उपर की तरफ बोर्ड लगा हुआ है पीछे की तरफ देखें तो हरियाली जोकि पेड़ की टहनियां दुकानों के ऊपर झुक रही है।

और उसके ऊपर जो कि लगी हुई है झंडियां लगी हुई हैं और देव सा लग रहा है जिसमें बड़ी बड़ी सीढ़ियां लगी हुई हैं ये जालीदार --

इस तस्वीर मै देख पा रहा हूं कि एक ट्रेन जोकि अपनी पटरी पर चलती हुई आ रही है।